एक दो आदमी दिखाई दे रहे है यहाँ पर सूरज की तरह हाथ उठा के हैं नाव में बैठे हुवे है इधर पीला कलर का दिखाई दे रहा है पानी में इधर पानी भी है इधर जमीन है इधर पौधा भी है सब।

और फिर रेड दिख रहा हैं वाइट दिख रहा है ब्लू भी दिख रहा है इधर रेड कुर्सी दिख रहा हैं इधर वाइट नीचे में पोदान दिख रहा हैं जो है बोड दिख रहा है इधर मेरे को दरवाजा दिख रहा हैं पीला कलर का--

ये मूर्ति लगे है के पूजा भी करल जात है अगरबत्ती भी जलाल जात है भगवान के नाम से मानल जात है हमल मान थी अकेला और जो भी है गाडी में भी हमल रख थी तो रोज अगरबत्ती जलात है अपन गाड़ी मेंसुबह -शाम जो भी हैं।

एक मेरे को एक झरना दिखाई दे रहा है व्हाइट- व्हाइट पानी गिर रहा है इधर जंगल है पेड़ दिखाई दे रहा है मेरे को छौ ठो और जो है इधर जमीन भी दिखाई दे रहा हैमेरे को हल्का-हल्का रेड -रेड कलर का पता दिखाई दे रहा है हरा कलर का पता दिखाई दे रहा हैं।

इधर में कुछ दिखाई दे रहा है मेरे को आसमान भी दिखाई दे रहा है इधर में और भी कुछ दिखाई दे रहा है हरा -हरा कलर का पीला कलर का दिखाई--

इधर व्हाइट दिखाई दे रहा है जमीन उधर भी आसमान भी रेड और व्हाइट दिखाई दे रहा है हरा कलर का दिखाई दे रहा है ये जो पेड़ है और बिजली का खंभा दिखाई दे रहा हैं।

और इधर में कोई आदमी भी दिखाई दे रहा है इधर मेरे को पौधा इधर दिख रहा है कराकट दिख रहा है और स्कूटी दिख रहा है।

इधर में मेरे को पानी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है ऊपर से इधर हरा-हरा पत्ता भी दिखाई दे रहा है इधर व्हाइट व्हाइट भी दिखाई दे रहा है पत्थर में इधर में आसमान भी दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर का--